लाइट लाइन ये एक लाइट लाइन है जो कि पुल के ऊपर लाइट भी है। लाइन सुन दिखने में तो बहुत सुंदर दिखाई पड़ता है।